और उसके बगल में दो रिक्शे वाले भी दिखाई दे रहे हैं तथा यहां पर कार और मोटरसाइकिल और रिक्शे वाले भी दिखाई दे रहे हैं।

तथा यहां पे तरह तरह के लोहे की समान भी राखी हुई है एवं यहां पे एक बॉक्सिंग कोर्ट भी बनाया गया है।

तथा यहां पे एक ठेला भी लगाया गया है जीस पे लिखा गया है चाइनीस वाला।

तथा ये स्टेशन पे बहुत सारे सुनसान भी दिखाई दे रहा है।

यह एक फलों का दृश्य है जहां पे तरह तरह के फल दिखाई दे रहे हैं।